जिम है जिसके की अंदर टाइल्स है।

एच_डी_एफ_सी बैंक है एक औरत हिजाब पेहनी हुई है।

बहोत सारे आदमी झोला पहने हुए है।

चंदन लगाया हुआ है आदमी को थोड़ा बाल है एक शर्ट पहना हुआ है।

फैन है ए_सी है लाइटनिंग है।

न्यू केरला होटल है वेज एंड नॉनवेज है अंदर शीशा लगा हुआ है बहुत सारे लोग हैं इस्कूटी है ऊपर में बोर्ड टंगा हुआ है हरयाली है।

आदमी ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है बहोत सारे सामानों को बेच रहा है बुक स्टोर --

रेस्टोरेंट है फूल है पेड़ है बहुत सारे।

अंदर में बहुत सारे लोहे के समान से खाना बनाया जा रहा है।